के चारों तरफ हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

सामने में एक होर्डिंग पे माँ गायत्री श्रृंगार स्टोर लिखी हुई।

किनारे किनारे लाइट लगी हुई है।

इस दृश्य में एक कमरा है जिसका कलर वाइट रंग का है।

इसी के पीछे एक बड़ा सा व्हाइट कलर का बॉक्स भी दिखाई दे रहा है।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

यह दृश्य एक समारोह का है।

इस दृश्य में एक खाली मैदान है।

इसके चारों तरफ ढेर सारे माता के फोटो लगे हुए हैं।

इस दृश्य में एक खाली मैदान है जिसके ऊपर ढेर सारे बालू दिखाई दे रहे हैं।

इसके चारों तरफ जंगल दिखाई दे रहे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

एम एस फैब्स लिखी हुई है।

वही पे ढेर सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

पीछे ढेर सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य एक जंगल की है।